यहां बहुत बड़े स्टेज है स्टेज पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे को सर्टिफिकेट दिया गया है।

स्टेज बना हुआ है ये सब लड़किया डांस कर रही हैं सभी बहुत बड़े बॉक्स रखे हुए है।

यह दोकान है दोकान पर व्यक्ति समान खरीद रहे है कुछ बोरियो में भी समान रखा हुआ है।